और बच्चे भी बैठ कर खा रहे हैं और कुछ पानी का बोतल भी रखा गया है।

अ दीप की अ की इलेक्ट्रिकल शॉप है और इस इलेक्ट्रिकल शॉप के बा बाहर बहुत सारे--

पत्थर के बीच में एक छोटी सी नदी गई है।

हां तो यहां पे बहोत सारे पेड़ है और पेड़ पे ग्रीन पत्ते है।

और कुछ बच्चे दूसरी खे दूसरी भी खेल दूसरी जगह भी खेल रहे हैं।

पिक्चर है इस घर के बाहर--

बाइक और कार भी पार्किंग किया गया है और एक आदमी भी खड़ा हुआ है। कुछ कुत्ते ब टहल रहे है।

और इस पेड़ में एक बच्चा लटक कर अपनी फोटो खींच रहा है।

पेड़ भी है नारियल का पेड़ है और बाकी पेड़ भी है।

बहोत सारे कुरकुरी और लेज का पैकेट भी है और एक बहोत खूबसूरत सा दुकान है बाहर फोन पे का स्कैनर भी लगाया गया है और बहोत सारे --

और यहां पे बहोत खूबसूरत केला पिच्ची आलू प्याज--

वह अपने मिरर देख कर सेल्फी ले रहा हैं।